उनके नीचे एक पोस्टर है जोकि लाल रंग से रंगा गया है और बगल में कई सारी छत्रियां भी लगी हुई है।

यहाँ पे हम देख सकते है कि यह कही का घाट है जोकि काफी ही स्वच्छ और साफ़ दिख रहा है और उसके अंदर का पानी भी बहोत ही स्वच्छ और साफ़ है।

जोकि फोटो खींचने के बाद काफी अच्छी आएँगी और उसके पीछे कइ सारे हरे-हरे मैंदाने भी हैं बहुत सुन्दर लग रहे हैं।

लेत् लेता हुआ है जोकि अपने हाथ के दम पे है।

यहाँ पर हम देख सकते है कि यह एक चाट का दुकान है। जिसपे ढेर सारे आदमी भीड़ लगा के खड़े हैं।